कंपनी का है जो कि है एचपी जिसका दुकान यहां पे हमें दिख रहा है जो कि तुरंत ही अभी नया नया खुला है।

अच्छे क्वालिटी का कपड़ा मिलता है एक अच्छे से कीमत पे।

अंगूर जैसे फल दिख रहे हैं जो हमारे सेहत के लिए काफी ही फायदेमंद है।

हम झूल सकते हैं और साथ ही इस झुला में हम देख पा रहे हैं जो इसका टिकट काउंटर भी है जिसपे हम टिकट ले सकते हैं और इस जगह पे काफी भीड़ लगी है।

इस तस्वीर को देखकर मैं ये बता रहा हूं कि ये तस्वीर पेट्रोल पंप का है।